और छत की बेस पर दो आदमी खड़े हुए हैं यह कुछ कुछ हाथों में पकड़े हुए हैं।

यह एक तालाब का दृश्य है आसपास में छोटे छोटे खेत दिखाई दे रहे हैं।

जहां तीन टेबलें लगी हुई है कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।

शैड का फोटो है शैड के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है पीछे की तरफ बहोत सारे पौधे हैं।

बीच में एक डिजाइन बनी हुई है बाहर की तरफ एक बोट रखी हुई है जिसका रंग गुलाबी है।

और यहां बहोत सारे पौधे भी हैं पौधे बहोत हरे-भरे हैं और फूल भी लगे हुए हैं।

दुकान का सामान प्लास्टिक का दिखाई दे रहा हैं यहां बहोत सारे टब लगे हुए हैं और हार्पिक भी पड़े हुएं हैं।

एक मार्केट की तस्वीर है सामने दुर्गा देवी मंदिर भी है एक आदमी अपने मुंह में--

जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज की मशीने लगी हुई है।

सामने दो दुकानें दिखाई दे रही है एक दुकान सैलून है।

यह एक बाजार की तस्वीर है बाजार में बहुत सारी दुकानें लगी हुई है।

एक आदमी यहां खड़ा हुआ है और जो झरने पर भी खड़ा हुआ है।